यह एक गार्डेन है। यह गार्डेन में सब अलग-अलग प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे पौधे भी है।

एक गांव में मेला लगा हुआ है। ये मेले के अंदर एक बड़ा झूला लगा हुआ हैकई लोग मेले में जा रहे हैंकई लोग मेला देख रहे हैं ये मेला किसी गांव में दिख रहा है।

यह एक सर्विस सेंटर है इसके आसपास कई बाइक और फॉर व्हीलर पड़ी गयी हुई है।

यह रात का समय है ये किसी मंदिर की तस्वीर है ये मंदिर के अंदर मूर्ति लगी गई है यहाँ सब लाइटिंग चालू हो चुकी है सब लोग के चढ़-चढ़ के अंदर जा रहे हैं।